पास में एक मोटर साइकिल खड़ी है और पीछे बहुत सारी साइकिलें भी खड़ी है।

यहाँ पर बोहोत सारे लोग ढेर सारी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

बीच में एक सफेद कलर का सोफा-सेट जैसा --

थोड़ी सी हल्की लाल रंग की मिट्टी जैसा लग रहा है।

चेयर पे बैठा है। दो अन्य व्यक्ति उनके सामने बैठे हैं। एक व्यक्ति ने सर पर लाल रंग का कपड़ा बांध रखा है।

सामने में एक एम्बुलेंस खड़ी है। उसके सामने में एक पीले रंग का --

पास में दो स्कूटर जैसे खड़े --

और बोहोत सारी मोटर साइकिले भी कोने मे देखी जा सक --

पास में कुछ झोंपड़े बने हैं और एक मोटरसाइकिल दिख रही है।

इसमें एक नदी के किनारे कुछ नाव खड़ी हैं जिनके ऊपर --

इसमें एक तरफ हरे कलर का कारपेट बिछा हुआ है जमीन पर।

उसके ऊपर बोहोत सारे मजदूर काम कर रहे हैं जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं। किसी ने सर के ऊपर कपड़ा भी बांध रखा है।

पेड़ों के ऊपर कुछ पत्तों का रंग पीला है और बाकी का हरा।

फ्लोर सफेद रंग के दिख रहे हैं। एक व्यक्ति सफेद कलर के शर्ट पहने काले रंग की मोटरसाइकिल पर सामने से जा रहा है।

दुकान के एक हिस्से मे बोहोत सारा सामान दिख रहा है जबकि दूसरे मे बोहोत सारी बोरियाँ।